कपड़ा लगा हुआ है और रस्सी से चारों तरफ से लिपटा हुआ है एक पीले रंग का ट्रक नजर आ रहा है और एक व्यक्ति भी नीचे नजर आ रहा है।

यहां सामने तरफ सोफे लगे हुए हैं शोकफो के ऊपर गद्दे बीछे हैं और कुछ कुशन भी लगे हैं पीछे की तरफ।